चित्र में किसी जगह पे --

पानी बहता नजर आ रहा है इसमें कुछ गुलाबी रंग भी दिख रहा है आस पास घने बृक्ष और घास दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में एक गिरजाघर दिख रहा है ऊपर नीले सफेद गुलाबी फुग्गे दिख रहे हैं।

चित्र में एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें मंदिर का बरामदा दिख रहा है।

चित्र में एक दूर से एक बड़ा नहाने का तालाब दिख रहा है।

चित्र में एक बड़ा बोर्ड दिख रहा है जिसपे कुछ जानवरों की के चित्र दिख रहे है नीचे ह --